और आगे की ओर कुछ पौधे भी दिखाई दे रहे है।

एक औरत और एक बच्चा दिखाई दे रहा है।

बदायूं उत्तर प्रदेश लिखा हुआ है।

एक रोड दिखाई दे रहा है।

सामने एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

एक गाड़ी नजर आ रही है और साइड में एक आदमी भी दिखाई दे रहा है।

और ऊपर भी डेकोरेशन दिखाई दे रहा है।

बोर्ड है आसमान दिखाई दे रहा है।

सारी पत्तियां गिरी हुयी है। पीछे एक घर भी दिखाई दे रहा है।

सामने की और कुछ बोर्ड्स भी दिखाई दे रहे हैं।

एक मैदान दिखाई दे रहा है। आसमान भी दिखाई दे रहा है।

सामने की ओर कुछ घर नजर आ रहे है लाइट के खंभे नजर आ रहे है।

और आसमान भी नजर आ रहा है।

इस चित्र में मुझे कई सारे पेड़ पौधें दिखाई दे रहे हैं सामने की ओर --

परदे दिखाई दे रहे हैं जिसपे लाइट्स लगी हुई हैं।

सामने कुछ छोटे से पेड़ नजर आ रहे है और कई सारे लोग नजर आ रहे हैं।